देखियो कितेक नीक गुफा छै कितेक भीड़ लागल छै।

इन्नाके के पानी का बहाव कितक तेज छै।

कित्तेक नीक फूल सब के माला छै कित्ते नीक सजायक गायल छै नन्दी भगवान कित्तेक--

देख पन यहा चे है मार हाई फाई लोग आ बैठे अ म म मसाज सालौन --